हा ये एक रेल्वे स्टेशन रेल्वे स्टेशन है जहाँ पे बैठने के लिए बेंच है ये बेंच में बड़ा सा पेड़ है जो आपको छाया देगा --

ये विक्टोरिया मेमो मेमोरियल का बाहर से पिक खीचा गया है और जो व्हाईट कलर में है और उसके सामने एक गार्डन है|

और दो उसके बगल मे पोट्रेट लगा हुआ है।

और उसके बगल मे एक भी लगा हुआ है।